ग्रे कलर में दिखाई पड़ रही है। सामने बहुत सारी कार दिखाई पड़ रही है जो कि वाइट कलर और ब्लैक कलर मे दिखाई पड़ रही है। सामने एक डस्टबिन भी रखा हुआ है।

एक पार्ट्स है जो दिखाई पड़ रहे हैं और एक सामने एक आदमी भी खड़ा हुआ उसने ब्लू कलर की शर्ट जैसा पहन रखा है पीछे कोई शेडो ब्राउन कलर और ग्रे कलर में दिख रही है ‌। सामने कुछ पेड़ भी दिखाई पड़ रहा है और आसमान व्हाइट कलर का दिख रहा है।

ने घर जैसा बना हुआ है जो कि रेड कलर और वाइट कलर में दिखाई पड़ रहा है | यहां पर आगे दरवाजे के सामने रेड कलर और वाइट कलर के बलून लगे हुए हैं |

ग्रीन कलर में दिखाई पड़ रहा है| ऊपर रेड कलर का बोर्ड जैसा लगा हुआ है| ऊपर लाइट भी दिखाई पड़ रही है| गमलो में पेड़ दिखाई पड़ रहे है| साइड़ में कुछ बेंच चैयर सा बना हुआ है जो की रेड कलर में दिखाई पड़ रहा वहा पेड़ भी लगे है।

सामने कुछ मकान जैसा बना हुआ है वहाँ पे उपर खिड़की भी दिखाई पड़ रही है पीछे कुछ पेड़ दिख रहे हैं जो कि ब्लैक कलर मे दिखाई पड़ --

एक ग्राउंड दिखाई पड़ रहा है यहां पर कुछ लोग खेलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं सामने कुछ लोग बैठे हुए दिख रहे हैं।

सामने जाली लगी हुई है। उसके पीछे शायद कुछ हिरन दिखाई पड़ रहे हैं और कुछ खड़े हुए हैं और कुछ खा रहे हैं जो कि ग्रे कलर पिंक कलर में दिखाई पड़ रहे हैं। सामने बोहोत घास दिख रही है जो कि ग्रीन और हल्के ब्लैक रंग में दिख रहा है।

सामने बड़ा-सा गेट बना हुआ है सामने एक दरवाजा खुला हुआ है और उसमे कांच के शीश लगे हुए हैं | साइड में अलमारी रखी हुई है नीचे एक तख्ता बीछा हुआ दिखाई पड़ रहा है।